ऊपर से लगा हुआ है तार उर लगा हुआ है। जहाँ निकलेल --

फल-फुल आउ साग-सब्जी रखा हुआ है।

छूटा हुआ है। यहाँ पे भीड़ भी है।

चारों और बगल से गाछी वृक्ष है।

का दोकान है बहुत बड़ा है और फुकना --